हमे यहां पर एक मकान बहोत ही बड़ा मकान दिखाई दे रहा है जो दिखने में बहोत ही सुंदर लग रहा हैउसकी खिड़कियां बहोत ही ज्यादा दिख रही है और एक ऊपर एक पानी वाली पाईपलाइन भी लगी हुई है।

फ्रिज कूलर सब फ्रिज लिए वहां पर और पंखा भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है सी.सी.टी.वी कैमरा भी दिखाई दे रहा है और कुर्सी भी वहा पर रखी है एक व्यक्ति वहा पर बैठा हुआ है और बल्ब भी दिखा--